पिंक कलर का पर्दा है ऑरेंज कलर का दिवाल है।

फीना ज्वेलर्स है लिखा --

मेघ भी लग रहा है और पूरा रेड कर दिया है मेघ बारिश होने वाला नहीं है लेकिन बहुत --

देख के लग रहा है सीमेंट का बोरा सब है इसके पास मीटर है नापे वाला चस्मा पहने हुए ग्रीन कलर का अथी --

जंगल में घास पेड़-पौधे सभी हरा और ये जल भी गया है धुप सब के कारन जंगल में जाने का रास्ता आगे दिख नहीं रहा है जंगल घना है बहुत ही --

यह मॉल का सीन है पीटर इंग्लैंड मॉल है जो बहुत ही इंग्लैंड का यहाँ पे कपड़ा सब भी बहुत बढ़िया मिलता है।

ये देख के लग रहा है गोड्डा झारखण्ड का --

ये बहुत अच्छा जगह है ग्रीन कलर का एक झंडा ऊपर मे लगा हुआ है एक नाव पे नाव ए एथी ब्लू कलर का है पानी है बहुत ही सुन्दर --

म की ऐज की दो महिलाएं बाहड़ में बैठी हुई है ये पोस्ट ऑफिस का सीन है।

मतलब अब लग रहा है ज ज जीरो भी है | जीरो --

यह एक दुकान का है जेनरल स्टोर जिसको कहते हैं | यहाँ पर फीस सब भी है माजा भी आगे मे खस्ता बिस्कुट ब्रेड सब रखा हुआ है ।

बहुत सुन्दर मछली लग रहा है देख के छोटा छोटा है ज्यादा बड़ा नहीं है नहीं ज्यादा बड़ा है खाने में बहुत मज़ा आएगा |

देख रहे है जैसे की एस.बी.आई. बैंक का अररिया ब्रांच का है अररिया है अररिया जिला है वही का यह एस.बी.आई. बैंक है।

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मौसम भी बहुत अच्छा वहां का दिख रहा है वो सब हॉलिडे मनाने का जगह है वो सब बहुत ही अच्छा --